लेक है जहा पर बहोत भीड़ होती है शुरू शुरू में कई प्रकार का सामान मिलता है जैसे कोल्ड कॉफ़ी --

दुल्हन नेह रेड कलर का लहंगा पहन रखा है दुल्हे नेह गोल्डन कलर की शेरवानी पहन रखी है।

पास में ये खिड़की भी है जिस पर पॉज लगा हुआ है टी_वी पर कलर वलर हुआ है।

यह पता नहीं कहां का दृश्य है बट यहां पर बहुत सारे पुल बना हुआ है जिस पर घोड़े लगे हुए हैं यहां पर बहुत खंभा भी है।

यह एक स्कूल के बाहर का द्रश्य है इस स्कूल का नाम बॉर्डल हैं स्कूल है।

पिजड़े का कलर ब्लैक है और यहा पर एक सफेद तोता भी है जोअ केमरे की ओर देख रहा है।

ये है एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बहार का दृश्य है जहा पर--

रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है यहाँ एक जलर लगी हुई है जिस पर--

बहोत सारे वाइट कलर में झंडे लगे हुए है जिनके झंडे का कलर --

यह एक ज्वेलर्स के बाहर की दुकान का दृश्य है जो कि--

रिलायंस ज्वेलर्स है यहाँ पर बहोत सारी ज्वेलरीज रखी हुई है यहाँ पर कई प्रकार की कुर्सियाँ भी रखी हुई है ।

पतला फोटो खींच रहा है जिसने येलो कलर के कपडे पहन रखे है ।

पीछे एक कंप्युटर भी चल रहा है पीछे एक कूलर भी लगा हुआ है जिससे ठंडी हवा आती है ये कूलर बिजली से चलता है।

और पीछे इलेक्ट्रिसिटी की स्विच लगे हुए हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी किसके घर में आ रही किसके जा रही--

ये पेट्रोल पंप के पास का दृश्य है जहां पर पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल भर रहा है बाईकों में भर रहा--

पेट्रोल पंप वाला यहाँ पे सब वहा पे लोग वहा खड़े है एक कार भी खड़ी है।

इसने ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी है और ये रेड कलर का पेंट हो रहा है और व्हाईट कलर का भी पेंट हो रहा है।

हाथी का घोड़ी का गोट का बहुत प्रकार से चल रही है पीछे--

मिक्की माउस भी है और भी ये पता नहीं कार्टून है जैसे भीम डोरेमोन जेरी --

र मैरून कलर की चुन्नी पहन रखी हुई है बगल वाली आंटी ने ब्लू कलर की साड़ी और पहन रखी है और घड़ी भी पहन रखी है बगल वाली ने आसमानी कलर की साड़ी और चूड़ियां भी पहन रखी हैं बगल वाली ने सफ़ेद कलर की व्हाइट पहन रखी हुई हैं।

एक सर से कोचिंग पढ़ रहे है सर ने व्हाइट कलर की शर्ट नहीं पहन कर ब्लैक कलर की शर्ट और पैन्ट पहन रखी है।

ये एक नगर परिषद के सामने बैनर है--

राजा ऐसी तरकी है ये लिखा हुआ है।

यहाँ से एक रेड कलर का कारर्पेट भी लगा हुआ है जिससे हम अन्दर की और जा सकते हैं नंगे पैर।

टॉयज और की दुकान हैं और यहाँ पर मॉल भी कह सकते हैं यहाँ पर वीकु भी हैं बार्बी की बहुत सारे टॉयज रखे हुए हैं मग्गी रखी हुई हैं।

बच्चे टॉयज बहोत पसंद करते हैं इसलिए यहां मिट्टी के खिलौने भी रखे हुए हैं इसे हम मिट्टी के खिलौने भी मंगा सकते हैं।

पेड़ पौधों का नुकसान नहीं होगा और हम आराम से आराम कर सकते है पीछे एक बहुत प्यारा सन्सेट हो रहा है वहाँ पर लोग भी खड़े है ।